जहां पे बहोत ही अच्छा फुलझड़ियों से डेकोरेशन किया गया है ऐसा लग रहा है की शादी है।

और अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे जल रहे--

सारे यूज करने वाला सामान बेचा जा जाता है चारों तरफ लाइट ल--

सीढ़ी पर रेलिंग लगा हुआ है आसपास और भी घरे नजर आ--

काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा--